बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है इसे देखो कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।

कितनी मच्छी बिक रहीं हैं। चावल मच्छी चावल बिहारी लोग खाते हैं। देखो कितनी बिच रही हैं। केकड़े हैं बहोत सारी हैं।

बहोत सुंदर लग रहा है यहाँ पर फुलवारी है कितनी अच्छी लग रही है। बहोत सुंदर है देखो कितना बढ़िया है। ये पेड़े भी हैं बहोत सुंदर है ये देखो।